लोहे की बाहर को बाउंड्री लगी हुई है।

कुछ पट्टियों से बनी हुई हैं और कुछ पीले कलर की पट्टिया लगी हुई हैं।

लगी हुई है जो कि ज़मीन पर--

तो कुछ बना रहे हैं। व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

एक टेबल सामने है।

टी पैकेट है। उसके पास एक --

और लाइटे ऑन हैं। अंदर और बाहर एक ब्लैक कलर की पट्टी ऊपर खींची हुई है। जिसपे व्हाइट --

टेबल टाइप की पत्थर की बनी हुई है। उसके ऊपर --

मेज पड़ी है उसी --

फील्ड में धूप लग रही है।

दीवाल पे एक पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक रूम है।

ये जीने बने हुए है।

यह एक रूम है। रूम के अंदर बहोत सारे मेज पे लैपटॉप रखे हुए हैं।

बैग के पास में दो तीन स्टूल रखे हुए है वाइट कलर के।

और बरु बहुत देर लगा हुआ है बरु का।

इसपे एक जैसी पड़ी हुई --

और धुप के आगे ग्रीन कलर की --

और एक पीछे पोस्टर लगा हुआ है जिसपे इंडिया लिखा हुआ है।

बड़ा सा स्कूल बना हुआ है।

और एक गैलरी गई हुई है।

हरी-हरी फसल छोटी -छोटी बोई हुई है।

और उधर साइड में एक --

मेढ़ पड़ी हुई है। मेढ़ के पास में --

वो पिली और रेड कलर की साड़ी पहनी --

कुछ व्हाइट कलर के कपड़े पन्नी के अन्दर हैं।